जिसमें की बहुत सारे टावर लगे हुए नजर आ रहा है और उसमे बहुत सारे वायर जाते हुए दिखाई दे रहे है और हमे यहा पर बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे है पत्थरो के बाजु से हमे एक बहुत ही बड़ी नदी जाती हुई दिखाई दे रही है जिसमे की--

यहा बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं पहाड को ऊपर हमें बहुत बड़ा घर बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर यहा हमें पिला नजर आ रहा हेबिल्डिंग बिल्डिंग के आसपास हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है जो की देखने में बहुत अच्छे लग रहे है और हमें यहां पे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

रा पानी दिखाय दे रहा हे पानी के बाजू में हमें यहा पर बहुत सारे पथर ज वाईब रखे हुये दिखाय दे रहे हे ओर बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टाने नजर आ रही जिसका कलर हमें काला दिखाई दिखाय दे रहा ओर पानी का कलर भी हमें काला नजर आ रहा हे साथी साथी हमें यहा पे बहुत सारे पेड़ दिखाय दे रहे।

ओर हमें यहाँ पे दीवाल दिखाई दे रही है दीवाल का कलर हमें यहाँ सफ़ेद नजर आ रहा है और हमें यहाँ पे सड़क अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है सड़क का कलर काला दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है।

हरा दिखाई दे रहा है और सफेद नजर आ रहा है जो की देखने में ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हमें यहा पर बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और भी बहुत सारे पक्षी नजर आ रहे है जो की देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है।

बहुत ही खूबसूरत चीता दिखाई दे रहा है चीते का कलर हमें यहां पर सफ़ेद और काला धब्बे वाला नजर आ रहा है और उसका कलर हमें पीला भी दिखाई दे रहा है साथ ही साथ उसका--

पास हमे बहुत सारी घास नजर आ रही है जो की देखने में ही बहुत ही बढ़िया लग रही है और हमे यहा पर एक बंध दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पर जाली नजर आ रही है।